यहां पर कुछ लोग बैठकर इस पार्टी का आनंद ले रहे है।

यह एक बस स्टैंड हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग सफर करते हैं।

प्रदान की जाती है यहां पर हर अह--

जोकी बैठने की जगह हर तरह की चीजो की सुविधा है और साइड पे रोड पार्किंग बनी--

साइड पे एक डॉक्टर बि_आर अम्बेडकर की --

हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हैं सभी लोग अपनी मन्नत और दुआओं को मा--

पूरे प्रबंध किया गया है यहां भैंस हमें दूध प्रदान करती हैं यहां पर एक भैंस का तबेला--

यह एक छोटीसी दुकान हैं।

यहां पर एक सड़क बन रही है एक क्रेन है जोकि--

मिट्टी को पद्दर कर रही है जमीन--

पतंग की छोटी सी दुकान है यहां पर हर तरह की अलग अलग प्रकार की पतंगे पाई जाती हैं जहां पर--

यह एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहां पर--

यहां पर बच्चे को पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाता है।